scilab प्रयोग करके file handling पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
निम्नलिखित फंक्शन्स के साथ फाइल हैंडलिंग:
write फंक्शन
read फंक्शन
mopen
mclose
प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ संस्थापित scilab वर्शन 533 के साथ उबन्टु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
आपको scilab की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken hyphen tutorial dot org पर जाएँ
अब हम scilab में कुछ फंक्शन्स देखेंगे जो फाइल हैंडलिंग के लिए उपयोगी हैं
फाइल हैंडलिंग निम्न शामिल करता है
write फंक्शन प्रयोग करके एक फाइल में लिखना
read फंक्शन प्रयोग करके एक फाइल से पढ़ना
mopen फंक्शन प्रयोग करके मौजूदा फाइल को खोलना और
mclose फंक्शन प्रयोग करके पहले से खुली हुई फाइल को बंद करना
अब फाइल में डेटा लिखने से शुरू करते हैं
इस उद्देश्य के लिए write कमांड उपयोग होती है
साइलैब कंसोल विंडो को खोलते हैं
इसके साथ शुरू करने के लिए रैंडम नंबर्स की एक मेट्रिक्स बनाते हैं
टाइप करें: random अंडरस्कोर matrix is equal to rand ब्रैकेट में 20 कॉमा 1 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन और एंटर दबाएं
अब वर्तमान कार्यकारी डिरेक्टरी को जाँचते हैं
टाइप करें pwd
मेरी स्थिति में वर्तमान कार्यकारी डिरेक्टरी स्लैश home स्लैश fossee है
निश्चित कर लें कि इन कमांड्स का निष्पादन करने से पहले आप उस डिरेक्टरी में हैं जहाँ आपके पास रीड और राइट करने की अनुमति है
अब हम write कमांड प्रयोग करके टेक्स्ट फाइल में वेरिएबल random underscore matrix की विषय वस्तु लिखेंगे
टाइप करें:> write ब्रैकेट में कोट्स में random डैश numbers डॉट txt कोट्स बंद करें कॉमा random अंडरस्कोर matrix ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
अब देखते हैं कि क्या यह फाइल बन गयी है
मैं साइलैब कंसोल विंडो को मिनिमाइज़ करुँगी
और वो फाइल खोलूँगी जो मेरे कंप्यूटर की fossee डिरेक्टरी में बनाई और सेव की जाएगी
आप देख सकते हैं कि वेरिएबल random underscore matrix से डेटा टेक्स्ट फाइल random dash numbers dot txt में लिखा गया है
मैं इस फाइल को बंद करुँगी
scilab कंसोल पर वापस आते हैं
अब हम देखेंगे कि एक फाइल से डेटा को कैसे पढ़ते हैं
इसके लिए हम कमांड read को निम्न की तरह प्रयोग करेंगे:
टाइप करें: new अंडरस्कोर vector is equal to read ब्रैकेट में क्वोट में random डैश numbers डॉट txt क्वोट्स बंद करें कॉमा 20 कॉमा 1 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
read कमांड आर्ग्युमेंट में उल्लिखित फाइल से सारा डेटा पढ़ती है
जैसे इस स्थिति में random dash numbers dot txt
और वेरिएबल new अंडरस्कोर vector में संचित करती है
डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर दबाएं
यदि हम उपरोक्त कमांड में निम्न की तरह बदलाव करते हैं:
new अंडरस्कोर vector is equal to read ब्रैकेट में कोट्स में random डैश numbers डॉट txt कॉमा 19 कॉमा 1
तो read कमांड इस आर्ग्युमेंट में उल्लिखित फाइल से केवल 19 डेटा वैल्यूज़ ही पढ़ती है
जैसे इस स्थिति में random dash numbers dot txt
और वेरिएबल new अंडरस्कोर vector में संचित करती है
इस कमांड को scilab कंसोल पर दें और आउटपुट को प्रमाणित करें
अब mopen फंक्शन के बारे में देखते हैं:
fd = mopen ब्रैकेट में filename कॉमा mode
mopen कमांड एक मौजूदा फाइल को खोलने में उपयोग होती है जो एक तरह से c fopen प्रक्रिया के अनुकूल है
mode एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो नियंत्रित करता है कि क्या फाइल निम्न के लिए खोली गयी है:
r = पढ़ने के लिए फाइल को खोलता है
rb = पढ़ने के लिए एक बाइनरी फाइल को खोलता है
rt = पढ़ने के लिए एक टेक्स्ट फाइल को खोलता है
w = लिखने के लिए एक नयी फाइल बनाता है या फाइल को खोलता है और ज़ीरो लेंथ के लिए संक्षिप्त करता है
wb = लिखने के लिए एक नयी बाइनरी फाइल बनाता है या फाइल को खोलता है और ज़ीरो लेंथ के लिए संक्षिप्त करता है
wt = लिखने के लिए एक टेक्स्ट बाइनरी फाइल बनाता है या फाइल को खोलता है और ज़ीरो लेंथ के लिए संक्षिप्त करता है
a या ab = जोड़ता है फाइल के अंत में लिखने के लिए फाइल खोलता है या लिखने के लिए एक फाइल बनाता है
r+ या r+b = अपडेट करने के लिए एक फाइल बनाता है पढ़ता है और लिखता है
उदाहरणस्वरूप fd अंडरस्कोर r is equal to mopenrandomnumbersrt
उपरोक्त कमांड टेक्स्ट और रीडओनली मोड की तरह randomnumbers को खोलता है
mclose ब्रैकेट में fd:
mopen प्रयोग करके खुली हुई फाइल को बंद करता है
जहाँ fd खुली हुई फाइल के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर है
यदि fd को छोड़ दें तो mclose आखिरी खुली हुई फाइल को बंद करता है
इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही
हमने सीखा
निम्नलिखित फंक्शन्स के साथ फाइल हैंडलिंग:
write फंक्शन
read फंक्शन
mopen
mclose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
स्पोकन ट्यूटोरियल टीम:
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया conatct@spokentutorialorg पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद